पीले और काले रंग की जूते पहनी है उसके पास ही एक छोटा सा टुकड़ा रखा हुआ है साथ ही उसने जैकेट ग्लव्स और पहना हुआ है।

कुर्सियों को लाल कपड़ों से सजाया गया है साथ ही सीलिंग का कलर सफेद और हरा है।

यह किसी खंडहर का तस्वीर लग रहा है जो काफी पुराना है इसके सामने पेड़ है।

पर यह आदमी खड़ा हुआ है और ये पत्थर को छूने की कोशिश कर रहा है।

ए किसी मेले में लकड़ियों की दुकान का तस्वीर है जहां पर कई सारी लकड़ियों से बनाई हुई चीजे रखी हुई है।

यह एक पेट्रोल पंप का तस्वीर है जहां पर एक आदमी बाइक में एक औरत और एक बच्चे के साथ पेट्रोल भराने आया है।

यह एक मुर्गे की तस्वीर है जिसके पैर को रस्सी से बांधा गया है।